फूलों की माला दिखाई दे रही है।

मुझे फोटो में कुछ लोग दिख रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।